मास्क पहना है जिसके पास में पानी की बोतल है यहाँ पे हमें ककड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें न्यूज पेपर दिखाई दे रहे है पीछे में पुलिस वाला दिखाई दे रहा है जोकि मास्क में दिखाई दे रहा है यहाँ से हमें सड़क पे एक आदमी चलता दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर एक आदमी एक एलीफेंट की सूंड पे बैठा दिखाई दे रहा है सफेद रंग के दांत दिखाई दे रहे है हाथी हमें बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है इसका आंखे दिखाई दे रही--